ग्राउंड के एक साइट बहोत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और एक साइट बिल्डिंग बनी हुई है।

इस स्कूल में बोहोत ही सुन्दर ब्रेंच डले हुए हैं ब्रेंच पर --

जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जानी जाती है।

बिल्डिंग के सामने ग्राउंड है। ग्रां-पूरा ग्राउंड पेड़ो बा हरियाली से भरा हुआ है।

कूर्सी टेबल हैं और परदे लगे हुए हैं।

जो कूर्सी पर बैठ कर काम कर रही है।

और एक दुउकान पर मोबाइल कंप्यूटर --